यह एक हिरन है और जिसने अपने दोनों कान खड़े कर रखे है।

यह किसी के मकान का दृश्य है।

यह स्कूल हमें तीन मंजिल दिखाई दे रहा है।

यहां पर लाइटों के खंभे वगैरा भी लगे हुए हैं।

और यहां पर जो है पेड़ पौधे भी है और पीछे खेती बाड़ी लगी हुई है एक सूखा पेड़ भी है यहां।

और जो है कुर्सी पर बैठा हुआ लैपटॉप चला रहा है।

कुछ हमें यहां पर बिजली के तार खंबे वगैरा भी दिखाई दे रहे हैं हम यहां पर पेड़ भी लगी हुई है।

और इसमें रंग बिरंगे स्पीकर लगे हुए हैं।

पीछे टावर लगा हुआ है और यहां पर बैठने के हैं।

उन पे कुछ महिलाएं भी बैठी हैं और कुछ जेंट्स लोग भी बैठे हुए हैं। --

और यहां पर व्यक्ति दो व्यक्ति इसके एक व्यक्ति डेकोरेशन कर रहा है और एक साइकल पर खड़ा हुआ है।

गाड़ी की डेकोरेशन पर सभी तरह के फूल लगे हुए--

और यहां पर जो है शटर लगा हुआ है बंद है दोनों शटर ।

व्यक्ति ने जो है ब्लैक से कलर की टी-शर्ट --

और यहां पर कुछ घर भी घर भी बने हुए हैं।